और इसका पट्टी रेड कलर का बना हुआ है और इसमें झालर ल वगैरा बलूंस वगैरा लटके हुए हैं।

और उसके पीछे बादल भी है जो कि अभी घिरा हुआ है ब्लैक कलर का लगा हुआ है बादल।

और एक टेबल भी है और उसके नीचे हरे भरे घास भी है जोकि ग्रीन कलर का है और घर के पीछे एक गेट लगा हुआ--

और उसके पीछे येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ एक लड़का खड़ा है।

यहां पे एक बहोत बड़ा-सा पहाड़ है जिसमें की दो आदमी भी है दो एक बैठी हुई है और एक खड़े हैं।

और इंटा सॉलिड किया हुआ है उसके पास में एक आम का पेड़ है जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है।

ये पार्क के जैसा दिख रहा है जिसके नीचे मे बहोत साडे पानी है और उपर मे--

और इसमें बहुत सारे गर्ल्स है जिस जो कि तीन साड़ी पहनी हुई है और एक--

वे लटकाई हुई है जस्ट उसके पीछे एक टेबल है।

यहां पे एक दो तल्ले बिल्डिंग दिख रहा है जो की वाइट कलर के है और उसमें बहुत सारे खिड़कियां है।